एक व्यक्ति खड़ा है और एक लड़का खड़ा है उधर--

घर के आगे एक बोर्ड लगा हुआ--

एक व्यक्ति है जो ढोल बजा रहे हैं व्हाइट कलर का कुर्ता पहने हैं।

पीछे में पीला है लंबा सा लाइनिंग लकड़ी का दिया हुआ है।

यहां पे लैपटॉप से सब काम होता है कागज पत्तर रखा हुआ है और काउंटर है लाल कलर का कुर्सी है लकड़ी का और मोबाइल रखा हुआ है।

ढेर सारा पेड़ है।

यहां पे एक बैंक है जो बैंक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा का पोस्टर लगा हुआ है।

बड़ा सा हवेली है ऊपर में मस्जिद ऐसा बनाया गया पेंट किया हुआ है लाल से।

ऊपर में लाइट लगा हुआ है।

कुछ प्रोग्राम हो रहा है जहां पे एक माइक में पुरुष बोल रहे हैं।

कलर से पेंट किया हुआ है अगल बगल पेड़ है।

हैंगर है काउंटर लाल कलर का है।

ऊपर कलिन का डिब्बा कोलिन का डिब्बा रखा हुआ है।

और चार पांच बाइक लगा हुआ--

और उजला घर के पीछे एक बिल्डिंग है झोपड़ी लगा हुआ है।

ब्लैक कलर का रूम है और खिड़की लगा हुआ है।

और एक लड़का ब्लू कलर का टी_शर्ट पहना है और ब्लू पैंट पहना है।

बड़ा सा फील्ड बना हुआ--

बड़ा सा बिल्डिंग है जहां ए_सी वाला पंखा लगा हुआ है।

एक पेट्रोल पंप है यहां पे दो मशीन हैं।

और साफ सुथरा जगह है।

और सजा के में कपड़ा रखा हुआ है अलमारी में।

बगल में एक रोड है रोड के किनारे खपड़ा का घर है आसमानी कलर से पेंट किया हुआ है।